c में files पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि
file कैसे खोलें
file में data कैसे पढें
file में data कैसे लिखें
कुछ उदाहरण
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ
उबंटु operating system version 1110
gcc compiler version 461
files के परिचय के साथ शुरू करें
file data का संग्रहण है
यह database program letter या अन्य कुछ हो सकता है
हम एक file बना सकते है और c का उपयोग करके इसे access कर सकते हैं
c में file handling पर एक उदाहरण देखें
मेरे पास लिखा हुआ program है
चलिए देखें
ध्यान दें कि हमारी फाइल का नाम filec है
इस program में हम एक फाइल बनायेंगे और इसमें data लिखेंगे
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यह हमारा main function हैं
file variable को परिभाषित करने के लिए हम file type का उपयोग करते हैं
file variable header stdio h के अंदर परिभाषित होता है
* fp के लिए file variable के लिए pointer है
यह फाइल से संबंधित सभी जानकारी संचित करेगा
जैसे इसका name स्थिति और वर्तमान जानकारी
अपनी slides पर वापस जाएँ
अब हम फाइल को खोलने के लिए syntax देखेंगे
यहाँ fopen function stream को खोलता है
फिर यह file को stream के साथ links करता है
file उस file का name है जिसे हम खोलना या बनाना चाहते हैं
हम file के साथ path we सकते है
और हम extension भी we सकते है
यहाँ हम file का mode दे सकते हैं
modes के प्रकार देखें
w –फाइल को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार करता है
r – file को पढ़ने के लिए खोलता है
a –फाइल के अंत में लिखता है
अब अपने program पर वापस आएँ
यहाँ हम write mode में sample txt file बनाते हैं
हम देख सकते हैं कि path दिया गया है
हमारी file desktop पर बनेगी
फिर हम फाइल में statements लिखेंगे
welcome to the spokentutorial और
this is an test example
fprintf दिए गए output stream में output लिखता है
fclose stream के साथ सहयोगी file को बंद करता है
और यह हमारा return statement है
अब सेव पर click करें
program को निष्पादित करें
अपने keyboard पर ctrl alt और t कीज एक साथ दबाकर terminal window खोलें
कंपाइल करने के लिए टाइप करें
gcc space file dot c space hyphen o space file
enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए टाइप करें dot slashfile /file
enter दबाएँ
हम देख सकते हैं कि file निष्पादित हो गई है
अब हम इसकी जाँच करेंगे
home folder खोलें
home folder option पर click करें
अब desktop option पर click करें
यहाँ हमारी sample txt file है
यह दर्शाता है कि हमारी file सफलतापूर्वक बन गई है
अब खोलें
file पर double click करें
यहाँ हम messages देख सकते है
welcome to the spoken tutorial
this is an test example
इस तरह से हम file बना सकते हैं और इसमे data लिख सकते हैं
अब हम देखेंगे कि फाइल से data कैसे पढ़ें
मैने program पहले से ही लिख दिया है
मैं इसे खोलूँगा
इस program में हम अपनी sample txt फाइल से data पढेंगे और console पर data print करेंगे
अब मैं code समझाता हूँ
यह हमारी header file है
यह हमारा main function है
यहाँ file variable के लिए एक file variable और एक pointer परिभाषित किया है
फिर हमने एक character variable c घोषित किया
यहाँ हम file sample txt को read mode में खोलते हैं
output fp में संचित होता है
फिर हम condition को check करते हैं
यदि fp null के बराबर है
यदि condition true है तो हम message print करते हैं
file doesn t exist
अन्यथा यह दूसरी condition के लिए check करेगा
जबकि c eof के बराबर नहीं है
यहाँ eof file का अंत है
यह input का अंत बताता है
यह वह condition है जहाँ data source से और अधिक data नही पढ़ा जा सकता है
यदि condition true है तो यह sample txt फाइल से console पर characters प्रदर्शित करेगा
यहाँ getc विशिष्ट file या stream से character वापस करता है
अब यह हमारी sample txt फाइल से character वापस करेगा
putchar console पर character प्रदर्शित करने के लिए उपयोगित है
फिर यह characters को variable c में संचित करेगा
यहाँ हम file को बंद करते हैं
और यह हमारा return statement है
अब सेव पर click करें
program को निष्पादित करें
terminal पर वापस आएँ
कंपाइल करने के लिए type करें gcc space readfile dot c space hyphen o space read
अब enter दबाएँ
निष्पादित करने के लिए type करें/read
output प्रदर्शित होता है
welcome to the spokentutorial
this is an test example
इसी के साथ अब हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं
अपनी slides पर वापस जाएँ
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
file handling
file में data लिखना
उदाहरण fp = fopen sample txt w;
file से data पढ़ना उदाहरण fp = fopen sample txt r;
नियतकार्य के रूप में test file बनाने के लिए एक program लिखें
test file में अपना name और पता लिखें
फिर c program का उपयोग करके console पर प्रदर्शित करें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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
धन्यवाद